कुछ अह नाइस बंगलो होटल जैसा लग रहा है बहुत अच्छा नीचे रिक्शा खड़ी है।

तीन चार जन जैसे बैठे हुए हैं एक आदमी खड़ा है एक साइड पे बैठा हुआ दिख रहा है ऊपर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है छपड़ा--

कुछ बगीचा है ऊपर अ झाड़ लगे हुए ब्लैक कलर का खंभा जैसा झाड़ दिख रहा है।

बर्थडे पार्टी चल रही है लेडिस और जेंट्स खड़े हैं अपने बेबी को लेके खड़े हैं बाजू में एक बेबी खड़ी है।

बस है बस में एक आदमी खड़ा है दूसरा चल रहा है एक लेडिस चल रही है बाजू में दो लोग खड़े हैं नीचे।